दिखाई दे रहा है जिसमें एक कंपनी बनी हुई दिख रही कंपनी मे ग्रे कलर से पोता गया है ऊपर की ओर आसमान--

मुझे इस फोटो में कई सारे आजूबाजू आजूबाजू कई सारे पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं जो हरे भरे हैं।

साइड में बोतले रखी हुई दिखाई दे रही है जो अच्छी लगी थी वो ऊपर की ओर रखी हुई है।

इतने सारी यहां पे खंभे गड़े हुए है नीचे की रे रेत डली हुई दिखाई दे रही है साइड में एक चिज रखी हुई दिखाई दे रही है।

हरे भरे कई सारे पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे सामने कई पेड़ पौधे लगे इसी और लोहे की सारी रेलिंग की गेट पे लगी हुई दिखाई दे--

सामने इधर उधर कई सारी मशीने रखी हुई दिखाई देती है। दीवालो मे पीला कलर पोटा गया एक दिवालो मे व्हाइट कलर पोटा गया नीचे और ब्लैक कलर पोटा गया है।

मुझे इस फोटो में सामने की ओर एक बिल्डिंग में घर बना हुआ दिखाई दे रहा जो दो मंजिल की दो मंजिल का घर बना हुआ दिखाई दे रहा पीछे का व्हाइट कलर का पोता गया है।

काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं आजू बाजू मशीनें रखी हुई दिखाई दे रही--

ऊपर की ओर झूमर लगाई गई हैं सामने की ओर प्लस का आइकन बना हुआ जो दिखाई दे रहा।

इस फोटो में ऊपर की ओर नीचे ऊपर की ओर व्हाइट कलर का फोटो गया है। दिवाले व्हाइट कलर की पोटी नीचे का--

कई सारे फोटो फ्रेम बनाए गए हैं जो ऊपर की ओर चार नी बीच में चार नीचे और चार--

इतनी सारी चीजे दिखाई दे रही हैं घास फूस लगे हुए दिखाई दे रहे आसमान साफ है सामने में एक टंकी है वाइट कलर की ।

कई सारे रंग बिरंगे टैग रखे हुए दिखाई दे रहे हैं एक साइकिल गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई दे रही--

सामने की ओर एक इंसान खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है नीचे का घर सुना हुआ दिखाई दे रहा है।

और कई सारे पर्दे और सामने कोई पीले कलर की लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है दिन का समय है बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं के और पेपर भी।

कलर के पर्दे लगाए हुए हैं पर्दा भी लगाया जो पीला--